इस के अंदर काफी अंदर दिख रही है जैसे की पेड़ वागेर सब कुछ ही अच्छे दिख रहे हैं।

यहा बहुत सारे लोग जाते है बैठे हुए है|

जहां बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आए हुए आए हुए हैं।